रेड़ी के पीछे बहोत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं।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

मैदान के पीछे एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

उसके नीचे लॉन्ड्री के मालिक का फोन नंबर लिखा हुआ--

रेस्टोरेंट के सारे दरवाजे खुले हुए हैं।

उनके नीचे बहोत सारे बास्केट रखे हुए हैं।

केक शॉप के अंदर फ्रीजर में बहोत सारे केक दिखाई दे रहे हैं।

एक शाप के बोर्ड पर लाइव केक कॉर्नर लिखा हुआ है।

कमरे मे बहोत सारी सुंदर खिड़कियां भी बनी हुई है।

उसके अंदर बहोत सारे कुत्ते दिखाई दे रहें हैं।

पिंजरे की छत पर नीले और सफेद रंग के गुब्बारे लगे हुए हैं।

क्लासरूम मे बहोत सारे टेबल कुर्सियां लगी हुई हैं।

बोर्ड पर वड़ापाव बर्गर फ़्रेंच फ्राइज कि तस्वीर दिखाई दे रही है।

दुकान के स्टैंड पर बहोत सारे चप्पल लटके हुए हैं।

मैदान के बाहर एक छोटा घर दिखाई दे रहा है।

दुकान में रोजाना इस्तेमाल होने वाले सामान दिखाई दे रहे हैं।

मैदान के आस पास छोटे छोटे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

दवा खाना के बाजू में एक ग्रॉसरी शॉप भी दिखाई दे रहा है।

होटल के आसपास बहोत सारे बड़े छोटे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।